वहाँ पे लगता है कि कुछ आदमी वहां पे खड़े हुए हैं लाइट वगैरह लगा हुआ है।

वो अच्छे लग रहे है बैलून भी है जो वाइट में है और रेड में है और अम्म हरा में है तीन कलर है।

हरे भरे पेड़-पौधे हैं वो ज्यादा ए_सी वगैरह लगा हुआ है तार-उर है।

और पंखा भी लगा हुआ है बहुत सारा लाइट है जो देखने में अच्छी लग रही है कुर्सियां भी है।

और सीढ़ियां भी है और ब्लैक ब्लैक लोहा का ये गेट है।

डब्बा वगैरह रखा हुआ है पता नहीं क्या है लाइट वगैरह कुछ-कुछ है।